इस व्यक्ति को देखके बहौत सुन्दर प्रतीत हो रहा है।

और बहोत सु बहोत ही अच्छा लग रहा है।

कुछ व्यक्ति भी खड़े हुए हैं जहाँ पे डांस करते हैं।

यो कार को धूल रहे हैं यहाँ --

आस-पास --

बच्चो के लड़िकियो के लिए डिज़ाइन सस्ते कपड़े टंगे हुए दिख रहे --

है एक ओपन जैसा नज़र आ रहा --